और छह किताबों का ढेर दिखाई दे रहा है यहां पर पेन पेंसिल रबर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक ब्ल्यू कलर का टिन भी नजर आ रहा है एक बड़ा पत्थर नजर आ --

यह बहुत बड़ी बर्तनों की दुकान है जहां पर एक आंटी बैठी है।

उनके फेस पर लगाया हुआ है।

एक बड़े आदमी भी दिख रहे है।

यह एक गुरुद्वारा नजर आ रहा है जहां पर एक लाइट बहुत ज्यादा रोशनी करती हुई दिखाई दे रही है।

यह एक फील्ड नजर आ रहा है दो दीवारें हैं दीवारों के ऊपर टीन बिछाई गई है।

यहां पर हरियाली भी है और बीच में एक सड़क जा रही है।

यहां पर आर्टिफिशियल पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर एक सफेद कलर की टेबल रखी है।